नदी में कुछ लोग खड़े हुए है दिख रहे है एक पांगहत दिख रहा है खड़े हुए कुछ--

एक बेसिन दिख रहा है बेसिन पे एक लोहे का नल दिख रहा है एक छोटा सा पौधा दिख रहा है ।

एक अ टावर दिख रहा है ये एक मंदिर का गुम्बद दिख रहा हैं ।

हाज़ीपुर जंक्शन दिख रहा है।

हरे कलर की घास दिख रही है कुछ सफ़ेद कलर कलर की बिल्डिंग्स दिख रही हैं ।

और पीले कलर के कुछ फूल दिख रहे है रेड कलर के कुछ फ्लावर दिख रहे है हरे कलर की कुछ पत्तियाँ दिख रही है ।

पीले कलर का एक कर्टेन लगा हुआ दिख रहा है गुलाबी कलर का एक कर्टेन दिख रहा है।

दो सीटी दिख रहा है एक हरे कलर का कार्पेट दिख रहा है कार्पेट खड़ा हुआ दिख रहा है एक टेबल रखा हुआ दिख रहा हैं ।